घर बने हुए हैं। घरों के पीछे बोहोत सारे पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जैसा कि मैं यहां पे देख पा रही हूं तो एक थीएटर जैसा दिखाई दे रहा है सामने एक बहुत बड़ी सी स्क्रीन है।

बोहोत सारे घर दिख रहे हैं। घरो के पीछे दूर तक पहाड़ --

कीजिए यहाँ पे रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

पोस्टर पर बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

चलते हुए दिख रहे हैं एक इंसान वहाँ पे गाड़ी पे जा रहा --

छाते भी लगाए गए हैं। एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है।

एक आदमी ने सर पर टोकरी ली हुई दिखाई दे रही है।

जैसे कि मैं यहां पे देख पा रही हूं तो एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दे रही है नदी के अगल-बगल में कुछ छोटे-छोटे घर भी है।

हॉल मैं एक प्रोग्राम हो रहा है।

बहोत ही सुंदर यहाँ पे ब्रिज से नज़ारा दिख रहा है।